पीछे एक दरवाजा नज़र आ रहा है जोकि खोएरी कलर का है| उम्म्म स्टेच्यू एक काट के टेबल के ऊपर रखा हुआ है।

सामने एकबहोत बड़ा नदी नज़र आ रहा है जिसका पानी देख के बहोत ही साफ एवं स्वच्छ लग रहा है।